यह इमेज में हमें बड़ा सा वाटर पार्क बताया जा रहा है जिसके अंदर बोहोत सी बच्चो की स्लाइडे लगी हुई हैं और बड़ो की स्लाइडे लगी हुई हैं।

इसपे हमें ग्रे और लाल कलर का कॉम्बिनेशन कलर दिख रहा है तथा वह अब टूट चुका है और उसके ऊपर धूप आती हुई दिख रही है।

यह इमेज मे हमे गाये के तबेले में दिखाया गया है। जिसमे हमे दो काले कलर की गाय खड़ी नज़र आ रही है।

यह हमे एक बड़े तलाब की दिख रही है तथा उसमे हमे दो नाव तैरती हुई नज़र आ रही हैं। वहाँ पे हमे सूरज दिख रहा है जो की उगता हुआ नज़र आ रहा है तथा उसका कलर पीला है।